देखिए इस कमरे को बहोत ही खूबसूरत सजाया गया है पिंक को पर्दे वगैरा लगे है।

एक मूर्ति दिख रही है फूलों की माला लगी हुई है लाइट वगैरह जल रही है ।

और पलाउड के लॉकर वगैरह बने हुए हैं ए_सी लगी हुई है।

देखिए दो रिक्शा दिख रहा है एक रिक्शे में एक आदमी बैठा है एक आदमी खड़ा है।

एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा दिख रहा है बाहर बिल्डिंग वगैरह दिख रही है।

देखिए ये हवाई अड्डा दिख रहा है। एक बड़ी सी प्लेन --